इमारत के बाहर ढेर सारे पेड़ पौधे रखे हुए हैं पेड़ पौधे का रंग हरा है।

गुब्बारे का रंग सफेद गुलाबी और पीले रंग का है।

रेस्टोरेंट के अंदर ढेर सारे कुर्सियां और टेबल है कुर्सियों का रंग नीला और पीले रंग का --

कमरे के अंदर ढेर सारे टेबल और कुर्सियां हैं टेबल और कुर्सियों का रंग लाल सफेद और नारंगी रंग का है।

छवि मट्टी रखी हुई है मट्टी भूरे रंग की है।

छवि में दीवार पर एक टी_वी लगा हुआ है टी_वी काले रंग का है।